इस फील्ड पे हरे हरे घास कहीं कहीं दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे एक खंभा दिख रहा है जिसमे तार लगाई गई है।

यहां पे बहोत सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

यहां पे बहोत चट्टान पे बहोत सारे पौधे निकले हुए हैं।

यहां पे किसी प्रकार का पूजा हो रहा है यहां पे बहोत सारी सजावटे की गई है।

बहोत सारे छोटे-छोटे वायरिंग के पाइप भी नजर आ रहे हैं।

स्टूल के बगल में एक बोरी भी रखी हुई है।

कुछ व्यक्ति बस पे चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।